बीच में कुछ पीले रंग की पत्तियां भी हैं।

यहां पर बहोत सारे गमले हैं।

लाल रंग की कुर्सियां भीं हैं।

सामने एक औरत भी दिखाई दे रही है जो की बर्तनो की दुकान पर बैठी है।

यहां पर बहोत सारियां कुर्सियां और टेबल रखी हैं।

और काले रंग की बड़ी बड़ी--

जिनके नीचे सफेद रंग का पेंट किया हैं।